और सब बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों बैठे हुए हैं।

जर-जर सी बिल्डिंग सामने देखने को मिल रही है और छोटा-सा रास्ता भी दिख रहा है कुछ टायर पड़े हुए हैं।

व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है सामने गाड़ी जैसा कुछ खड़ा हुआ है।

ये किसी मॉल के अंदर की चोप दिखाई दे रही है जिसमें ग्रोसरी रखे हैं घरेलू समान रखे गए हैं।

और बहुत ही छोटे-छोटे बच्चे निचे दरी पर बैठे हुए हैं और पीछे झोपड़ी दिखाई दे रही है।

कुर्सी और डोरमैट (doormat) और स्टेयर दिख रही है ऊपर जाने --

इ सैलून छिए एमे केश कटा रहल छिए मशीन से केट केश कटा रहल छै।

लोग श वह पर खड़े हुए है कुछ बाहर और कुछ लोग अंदर दिख रहे हैं।